और ये एक हिप-हॉप करने की प्रैक्टिस कर रहा है। इसने अपने हाथो में भी शूज पहना है और पैरो में भी शूज पहना हुआ --

और बच्चे लोग सब बहुत ध्यान लगा कर के वहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट सिख रहें हैं।

यहाँ पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये बिल्डिंग अभी नीचे से बन रही है अभी इसका नीचे वाला काम हो रहा है।

और टीचर जी बच्चों लोग को सिलाई करने का तरीका सिखा रही है की किस तरह से सिलाई किया जाता है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ी-सी फूल माला लटक रही है फूलो की दुकान है जिसमें बोहत बड़ी फूल की माला लटक रही है।

दो इमाम साहब बैठे हैं और एक आदमी खड़ा है जो इमाम साहब से बात कर रहा है।